आर्मी नेवी सी_आई_एस_एस की पोस्टर लिखा है कांटेक्ट नंबर लिखा है।

बीच में पानी है आस पास में झाड़ है पे झाड़ है।

यहां पे कुछ पेंटिंग का कार पेंटिंग का काम किया है।

फिनिशिंग कर रहे है दोनों सेट का भी डोर फिट करके वेल्डिंग कर रहे हैं सामने टेल्स का पीस पड़ा है वही पड़ा है।

पांच लोग इधर कुछ मच्छी का बिजनेस कर रहे हैं व्यापार कर रहे हैं।

उधर पे नारल वाला झाड़ है इधर पे कुछस्टेडियम की तरहबना के हुआ है।

फैमिली मेंबर्स के साथ बात कर रहा है दोनों खेल रहे है सब लोग स्टेप बाय स्टेप बैठे हुए हैं।

आदमी आ रहा आदमी जा रहा है इधर पे कुछ लेडिज भी आ रही है।

बाहर पे पाइप डालके रक्खा हुआ है ब्लू कलर में भी लिखा हुआ है रेड एंड रेड कलर व्हाइट कलर ऑरेंज कलर में भी लिखा हुआ है।

महाराजा अग्रसेन पीजी कॉलेज वूमेन कॉलेज है यहां पे--